और उधर लाल-लाल डिब्बा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बाहर ट्राली बैग दिखाई दे रहा है दु --

जो और हमको ऑटो में एक व्यक्ति चढ़ते हुए भी नजर आ रहा है।

और कंप्यूटर का मॉनिटर दिखाई दे रहा है।

पास में एक कोई पॉपुलर हौंडा का शोरूम दिखाई दे रहा है।

एक लड़के ने बैग लटका रखा है स्काई ब्लू कलर का --

इधर एक लड़का और एक--

पास में बहुत सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं ।

एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई दे रहा है जिसका जड़--